यहाँ पर मुझे हल्का पिंक कलर का एक गेट दिखाई दे रहा है।

यहाँ सामने भी कुछ पौधे और निचे कुछ झाड़ियाँ उगी हुई हैं।

पीछे बहुत से पौधे दिखाई दे रहें हैं और--

बगल में एकात दुकानें और दिख रहीं हैं।

है जिस में दो तीन बसे खड़ी हुईं हैं ।

नीचे की ओर कैरेट रखे हुए है और ऊपर इसमें बहुत सारे फल रखे हुए जैसे --

और सामने पानी भी भड़ा हुआ है और इस में बहुत सारी झाड़ियाँ उगी हुई दिखाई दे रह --

ये और भगवान की है और एक राक्षस है वहाँ स्टेज मे मूर्तियों के पास एक लड़की भी खड़ी हुई है ।

और आसमान में छोटे-छोटे बादल भी दिखाई दे रहें हैं ।

पेड़ पर नीचे लाल और अ ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद कलर का पुता हुआ --